यहाँ पर एक होटल हैं जो कि उसका बैनर बना हुआ हैं की ये होटल हैं।

और एक ढाबा है और जो की उसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं कुछ सामान रखा हुआ है।

यहाँ पर एक बोहत बड़ा अ हाल टाइप है और जो की बहुत सारी चेयर रखी हुई है और एक उसमें कोई बैठा हुआ है जो की सेपरेटली --

और एक किला बना हुआ है ब्लैक कलर का और काफी बड़ा बना हुआ है जोकी--